सामने एक मच्छी मार्केट है उसमें छोटी-छोटी मच्छी बीच रही है और कुछ आदमी है जो उन मच्छियों को देख रहे है कुछ आदमी खरीद रहे है।

एक और दुकान है उसमें व्हाइट कलर की शर्ट पहने हुए मास्क लगाए हुए एक आदमी है जो पकडे हुए है और व्हाइट कलर की --

पीछे एक बहुत बड़ी जिम है अ जिसमें अ कुछ लाइटिंग है और नीचे मैट बिछी हुई है ग्रीन कलर की और फर्नीचर सा भी है और सामने कांच --